नमस्कार communicating to expeyes using python पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
plot window और python उपयोग करके धारिता यानि capacitance और प्रतिरोध यानि resistance मापना
यहाँ में उपयोग कर रही हूँ:
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए:
यदि नहीं तो सम्बन्धित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
अब python के परिचय से शुरू करते हैं
python एक सरल और आसानी से सीखी जाने वाली सशक्त programming भाषा है
निश्चित कर let कि python हमारे system पर संस्थापित हो गया हो
terminal खोलने के लिए ctrl + alt और t कीज़ दबाएँ
python interpreter शुरू करने के लिए type करें python और enter दबाएँ terminal पर python के default version से सम्बन्धित विवरण दिखेगा
प्रदर्शित the angle brackets python prompt को दिखाते हैं अब आप commands type करने के लिए तैयार हैं
python programming के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
मैं यंत्र के ऊपरी panel पर channels के बारे में चर्चा करुँगी
ऊपरी panel पर प्रत्येक terminal एक विशेष channel संख्या से निर्दिष्ट किया जाता है
उदाहरण के लिएchannel 1 a1 को और channel 2 a2 को निर्दिष्ट किया गया है
मैं दिखाऊँगी कि यंत्र को तारों से कैसे जोड़ते हैं
इस यंत्र के किसी भी तरफ screw terminals होते है
कनैक्शनन्स बनाने के लिए हम terminals में to डालते हैं और पेंचकस से कसते हैं यहाँ a2 sine से जोड़ा गया है
यह circuit diagram है
अब a2 के voltage को मापने के लिए एक परीक्षण करते हैं और इसका sine wave sine तरंग दिखाते हैं
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर a2 की voltage दिखाने के लिए a2 पर click करें a2 का voltage नीचे दिखता है
a2 पर click करें और channel ch1 तक खींचें जब हम a2 को ch1 तक खींचते हैं तो a2 का input data ch1 पर निर्दिष्ट किया data है
sine wave दिखाने के लिए msec/div slider को घुमाएँ a2 की voltages में बदलाव दिखाने के लिए a2 पर click करें
ch1 पर click करें और fit तक खींचें a2 का voltage और आवृत्ति दायीं तरफ दिखते हैं
a2 we परीक्षण करेंगे और python उपयोग करके a2 का voltage मापेंगे
कृपया ध्यान दें python interpreter पर गलतियों से बचने के लिए
expeyes से eyes library import करने के लिए prompt पर type करें import expeyes eyesj enter दबाएँ
type करें: p = expeyes eyesj open और enter दबाएँ open function एक object returns करता है यदि हार्डवेयर मिलता है
ये लाइनें expeyes library load करेंगी और यंत्र पर connection स्थापित करेंगी
a2 के voltage को देखने के लिए type करें: print p get _ voltage brackets में 2 और enter दबाएँ
output a2 का voltage दिखाता है इसीप्रकार हम a2 के अनेक voltage दिखा सकते हैं
a2 का voltage बदलता है क्योंकि यह ac voltage है
python interpreter उपयोग करके plots बनाने के लिए synaptic package manager उपयोग करके pythonmatplotlib लाइब्रेरी संस्थापित करें
मैंने अपने system पर पहले ही pythonmatplotlib library संस्थापित कर ली है
windows operating system पर plots बनाने के लिए
निम्न download और संस्थापित करें
संस्थापित expeyes files और drivers को copy करें और c drive में paste करें
sine wave बनाने के लिए python prompt पर type करें: import expeyes eyesj और enter दबाएँ
पहले की तरह type करें p = expeyes eyesj open और enter दबाएँ
type करें: from pylab import * asterisk pylab matplotlib library से एक program है enter दबाएँ
type करें: ion यह command pylab interactive mode को sets करती है एंटर दबाएँ
type करें: t v = p capture brackets में 2200100
2 a2 के लिए channel संख्या है 100 data points की संख्या है 100 आगामी मापों के बीच समय interval time interval है
enter दबाएँ
output देखने के लिए type करें: plot brackets में t v plot brackets में t v नई विंडो पर sine wave बनाता है
enter दबाएँ
हम windows commands prompt पर उपरोक्त commands उपयोग करके भी एक sine wave बना सकते हैं
आगे battery को बाहरी voltage स्रोत की तरह उपयोग करके a1 की voltage मापते हैं
बाहरी voltage स्रोत को मापने के लिए ground gnd को 3v की battery द्वारा a1 से जोड़ा गया है
यह circuit diagram है हम python interpreter उपयोग करके a1 की value दिखायेंगे
python prompt पर: टाइप करें import expeyes eyesj और एंटर दबाएँ
type करें: p = expeyes eyesj open और enter दबाएँ
type करें: print p get _ voltage brackets में 1 और एंटर दबाएँ
यहाँ channel 1 a1 को निर्दिष्ट किया जाता है a1 की voltage terminal पर दिखती है
a1 pvs को आंतरिक voltage स्रोत की तरह उपयोग करके a1 की voltage मापते हैं
इस परीक्षण में pvs a1 से जुड़ा हुआ है
यह circuit diagram है
terminal पर वापस जाते हैं type करें: print p set _ voltage brackets में 3 और enter दबाएँ
यहाँ pvs की voltage 3 volts set की जाएगी pvs की voltage दिखती है
type करें: print p get _ voltage brackets में 1 और enter दबाएँ terminal पर a1 की voltage दिखती है
ac मैं संधारित्र यानि capacitor और प्रतिरोधक यानि resistor उपयोग करके voltage के components ac और dc को दिखाऊँगी और एक square wave भी बनाऊँगी
इस परीक्षण में
यह circuit diagram है
अब plot window पर परिणाम देखते हैं
plot window पर measure c on in1 button पर click करें
in1 की धारिता यानि capacitance 06 pf pico फैरेड दिखती है
measure r on sen button पर click करें sen का प्रतिरोध resistance 560 ω दिखता है
कृपया ध्यान दें आपको धारिता capacitance और प्रतिरोध resistance की थोड़ी सी अलग values मिल सकती हैं
sq1 पर click करें और ch1 तक खींचें
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें
square waves दिखाने के लिए sqr1 check box पर click करें waves को समायोजित करने के लिए msec/div slider को खिसकाएँ
ch2 पर click करें और fit तक खींचें ch2 की voltage और आवृत्ति दायीं तरफ दिखती हैं
हम python interpreter उपयोग करके धारिता प्रतिरोध मापने और एक square wave बनाने के लिए we परीक्षण करेंगे
python prompt पर type करें: import expeyes eyesj और enter दबाएँ
type करें: p = expeyes eyesj open और enter दबाएँ
धारिता capacitance की value को दिखाने के लिए type करें: p measure _ cap और enter दबाएँ
धारिता capacitance की value terminal पर दिखती है
प्रतिरोध value को दिखाने के लिए type करें: p measure _ res और enter दबाएँ प्रतिरोध value टर्मिनल पर दिखती है
square wave बनाने के लिए type करें: from pylab import * और enter दबाएँ type करें: ion और enter दबाएँ
type करें: print p set _ sqr1 brackets में 100 और enter दबाएँ यहाँ 100 square wave की आवृत्ति है
type करें: t v = p capture brackets में 6400100 और enter दबाएँ
type करें: plot brackets में t v plot brackets में t v एक नई window पर square wave बनाता है
enter दबाएँ
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
plot window और python उपयोग करके धारिता capacitance और प्रतिरोध resistance मापना
एक नियत कार्य में लॉट window उपयोग करके अपनी उंगली का प्रतिरोध मापें
उपरोक्त परीक्षणों के लिए circuit डायग्राम्स दिखाएँ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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है